पेड़ पौधे ढेर सारे लगे हुए हैं दो पिलर वगैरह भी खड़े हैं शाम के टाइम की ये वीडियो है जो देखने में काफी अच्छी लग रही है।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

धीरे से धीरे से अपना दिन है एंजॉय कर रहा हैं।